सामने की तरफ पानी की बोतले भी नजर आ रही है।

लाल कलर के फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

सफेद रंग के फूल भी नजर आ रहें हैं।

हमें यहां पर एक बत्तख दिखाई दे रही है।

हमे यहाँ पर एक अस्पताल दिखाई दे रहा हैं।

हमें यहां पर एक अलमारी जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

हमें यहां पर एक अस्पताल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर कार सर्विस की जाती है।

हमें यहां पर एक मार्केट में दुकान दिख रही है।

टेबिल दिख रही है पेपर दिख रहा है।

यहां पर हमें एक मकान दिखाई दे रहा है।